और इसके चारो तरफ सरियों के स्तंभ बने हुए जिन्हें होल पायर भी कहते हैं जिनमे मसाला भरा जाता हैं।

ये नए ट्रक और खाली ट्रक में बॉडी लगा कर देते हैं जिस पर एक टायर रखा हुआ है।

बगल में बहुत सारे पेड़ लगे हैं नीचे लोहा पड़ा हु--

यह एक अमर इंसान का स्टैचू है।

इसपर ब्लैक एंड व्हाइट टाइल लगे हुए हैं ऊपर एक चबूतरा--

सामने जो बाइक खड़ी है ब्लैक कलर की है उसके ऊपर ब्लैक कलर का बोर्ड लगा हुआ है एक पेड़ है जिसमे से व्हाईट और ब्लैक कलर झलक रहा है नीचे ईटों का --

ग्रीन कलर की जैकेट ब्लैक कलर की सर पर कैप लगा रखी है।

पहले की तरह इसकी पूरी डीजाने बगल में पहाड हैं।

ये एक प्लेस की फोटो है जहां पर लोग घूमने के लिए आते है।

बहोत बड़ा गार्डन है और छोटी सी पार्क में बहोत बहोत बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए--

एक पोस्टर पर लिखा हुआ है पोस्टर के बगल में एक शोरूम या दुकान है।

इस पर बहोत सारी चीज है जिसके अंदर रखी हुई है सामने एक खंभा लगा हुआ है बगल में और पेड़ पौधे लगे हैं वहां पर भी एक शॉप है जिस पर आदमी खड़े --

यह एक गेस्ट हाउस की फोटो है जो गेस्ट हाउस के चारो तरफ से डिज़ाइन है लाइट्स लगी हुयी है गेस्ट हाउस और बाहर--

इस ज़ू के अंदर कोई भी आदमी नहीं है यहाँ पर सिर्फ एक ताला सा भालू दिख रहा है और भालू आपने घर के अंदर जा रहा है जिसके चारो तरफ गेट लगे हुए है।

सामने ब्लैक कलर की कोई बड़ी बड़ी चीज रखी हुई है और जस्ट सामने एंट्री एंड एग्जिट के दरवाजे हुए जो खुले हुए है।

येलो कलर की ब्लू कलर की वाइट कलर की--

नीचे सामने बहुत सारी घास लगी हुई है।

ऊपर टी_वी_एस का पोस्टर लगा हुआ है ये सिर्फ वन टाइम मंजिल है नीचे लोहे की गेट और शटर लगे हुए--

गेट्स पेन के पैकेट कुर्सी पर रेड कलर का गद्दा रखा हुआ है।

यहाँ एक गौशाला का मैदान है जिस पर काफी सारी गौए बैठी हुई है।

कुछ काली कलर की गाये हैं। बहुत सारी गाय टेहल रही है। सामने बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए। चारों तरफ से बाउंड्री है ताकि गाये बाहर निकल जाए। नीचे जमीन है।

रेगस की फोटो है एंड बगल में एक शॉप है जहा पे इंसान कुछ काट रहा है।

एक पीतल का लोटा रखा हुआ है जिसे आई थिंक पानी पिया जाता है।

काफी सारी टाइल्स रखी हैं और टाइल्स के टुकड़े नीचे कटे हुए रखे हैं इंसान के सामने भी --

जीसके नीचे बंजर जमीन पड़ी हुई है। गार्डन के ऊपर हरी हरी घास उगी हुई है।

येल्लो कलर का एक ड्रैगन स्टैचू लगा हुआ है जो --